इस चित्र में एक वस्त्र की दुकान देखी जा सकती --

इन टहनियों का रंग हल्का हरा है।

घास की रखी है मैदान पे कुछ लोग भी हैं।

इन वाहनों का कुछ का रंग सफ़ेद है।

इस चित्र मे एक भवन देखा जा सकता है । भवन का रंग हलका पीला है |

टीला के ऊपर एक लड़का दिख रहा है ।

इन लोगो के समीप कुछ वृक्ष भी है।

इस चित्र में एक भवन दिख रहा है।

इस चित्र में एक नहर दिख रही है नहर के समीप एक वृक्ष है।